इसमें कुछ फूल का प्रिंट किया गया है और कुछ बेड दिखाई दे रहे हैं जो ब्लैक और क्रीम कलर के है।

इसमें दो छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं जो ग्रीन कलर के है और एक ऊपर में पंखा दिख रहा है जो वाइट कलर का है।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

यहां पर मुझे एक बड़ा सा ऑफिस दिख रहा है जो मिट्टी और थोड़ा व्हाइट कलर का है।

और कुछ सामान रखे हुए है जो लैपटॉप है।

और कुछ आदमी लोगों के फोटोस बने हुए हैं जिसके नीचे हेयर कटिंग हेयर कट हेयर स्टाइल फेशियल ये सब लिखा हुआ है।

यहां पर मुझे एक बड़ा सा नदी दिख रहा है जो हल्का ग्रे कलर का है और एक बड़ा सा पहाड़ जैसा कुछ दिखाई दे रहा है।

जो ग्रे और थोड़े ब्लैक कलर के हैं और साइड में बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ दुकानें भी लगी हुई हैं।

और एक टेबल दिख रहा है जिसमें कुछ कागजे चिपकाई गई है और एक लाइट दिख रहा है जो वाइट कलर का है।

और साइड में कुछ पाईपे भी दिख रही है जो व्हाइट और ग्रे कलर की है।

और तीन गमले रखे हुए नीचे में दिख रहे हैं जो वाइट कलर के हैं जिसमें पौधे लगे हैं जो ग्रीन कलर के हैं।

और कुछ मेहंदी और औरत और एक हेयर स्टाइल का फोटो बना हुआ है जिसके नीचे आनंद नगर लिखा हुआ हैं।

और एक अलमारी जैसा बना हुआ है जो आधा दिख रहा है जो ब्लैक कलर का है।

जिनमे सामने कुछ चिंगडी मछली दिखाई दे रही है जो थोड़े बड़े बड़े हैं।

और उसके पीछे बहोत सारी बुकस रखे हुए है जो अलग अलग कलर के है।

यहां पर मुझे एक जंगल दिख रहा है जिसमें बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

और कुछ बैंक के बाहर में बहोत सारी स्कूटी और बाइके लगी है जो रेड और ब्लैक कलर की है।

जो पीछे की ओर मुड़ा हुआ है और उसके आगे एक कांच का गेट दिखाई दे रहा हैं।

यहां पर मुझे बहोत सारे अलग अलग टाइप की बोतलें दिखाई दे रही है।

जिसमें से कुछ डंबल दिखाई दे रहे हैं जो वाइट कलर के है।